कतली है रेहू है बुआरी है झींगा है सब मछली है और लोग यहाँ पर अ --

यहाँ पर बोहुत अच्छे से टीचर समझा रहे बच्चों को और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ए टीचर काफी अच्छे हैं। ये बहुत ही --

ये एक जेनरल स्टोर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉर्लिक्स --